इस फोटो में दिन का समय दिखाइ दे रहा है।

यहां पर घास दिखाई दे रही है काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और ये--